--है कार खड़ी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है चेनल गेट है दिखाई दे रहा छत्री लगी हुई छत पर दिखाई दे रही बहुत सारे पेड़े लगे साइड के छत पे दिखाई--

यहाँ एक मकान बना हुआ गेट पर गुब्बारे अलग - अलग कलर के लगे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सी लेडीसे जेन्स खड़े हुए कोई फंक्शन फंसेस्टीवे दिखाई दे रहा है ये --

यहां एक हैं यहाँ टप लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर मोटरसाइकिल खड़ी हो दिखाई दे रही है हवा पंप की नली दिखाई दे रही हैं आई--

यहाँ शंकर भगवान की तस्वीर बहोत बड़ी बनी हुई शेष नाग की तस्वीर भी बानी हुई है इसमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ स्टेज पे बहुत सारी लेडीजे अपने -अपने हिसाब से नृत्य करते हुए--

एक मछली बाजार में छोटी और बड़ी मछली सब बेचने के लिए रखी हुई है एक लेडिस बेच रही है यहाँ पर एक साड़ी पहने लेडीज एक ड्रम पर बैठी हुई है स्टूल पर बैग रखे हुए हैं कुछ--

इस इमेज मे यहाँ एक लकड़े का नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ--

बीच में यह टेबल कुर्सी लगी दिखाई दे रही है यहाँ पर बच्चियां टेबल कुर्सी पर कुर्सी पर बैठी हुई सामने गोला टेबल --

रखी हुई दिखाई दे रही है एक लड़का एक लड़की है एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही है तस्वीरे है लगी हुई दिखाई दे रही लाइटिंगे लगी हुई दिखा--

यहाँ कार के गैरेज में आदमी खड़े हुए दिखाई दे रही है कहाँ है सर को दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे लोग पहले ही दिखाई दे रहे हैं कांच लगे हुए दिखाई दे।

यहाँ हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है जिसमे से कुछ बिल चेयर पर बैठी हुई अम्मा जी रेजिडेंस से लाते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस में यहाँ कैमरा दिखाई दे रहा है फोटो खीचते दिखाई दे रहे है कुछ सामान दिखाई देते हुए एक आदमी स्टेज पर --